और ऊपर ग्रिल भी लगाया हुआ बाउंड्री में और इसके अगल बगल मे बाइक खड़ा हुए है।

जिसमें अलग अलग प्रकार का मशीन है।

और इसमें साइड में बटन दिया गया है जो की रेड और ग्रीन है बहोत प्रकार --

और साइड में जैकेट भी टांगा हुआ है और उसमें लोहिया भी चढ़ाया गया --

दुकान के नीचे सब्जी लाने वाला थैला भी रखा हुआ है।

जो की मिट्टी का पेंट है और जो दीवाल है सो पीला कलर हल्का है और उपर नारंगी कलर है।

यह एक ढाबा है और ढाबा के ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ अपना ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट ।

और इसके सामने अलग अलग डिजाइन का ग्रिल बनाया गया है।

जैसे कि पीला रेड और ब्लैक में है।

और इसमें वायर भी है और स्टील का पाइप भी है और टूल भी है और इधर बॉक्स भी बना हुआ है।